इसके सामने काफी सारे कुरकुर बिस्किट्स जो है टंगे हुए हैं दुकान के अंदर दो फ्रिज दिख रहे हैं सामने एक लोहे की सीढ़ी दिखाई दे रही है ।

बेंच के ऊपर काफी सारा हमे सामान दिख रहा है कुछ पेपर से कुछ ग्लू है और कुछ बच्चे भी यहाँ खड़े हुए है जो पेपर से आर्ट्स कुछ पेपर के डिजाइन बना रहे है।

बेंचों के ऊपर कागज रखे हुए हैं। कलरफुल । यहाँं पे काफी सारे बच्चे खड़े हैं जो कि कागज से कुछ बना रहे है। कुछ --

यहाँ पर हमे एक बोहोत बड़ा जो है क्लास रूम दिखाई दे रहा है | क्लास रूम का कलर लाइट येल्लो है रेड है नीचे बार्डर पे ब्लू कलर है जमीन पे यहाँ काफी सारे बच्चे हैं नीचे बैठे हुए है।

दीवाल सामने फ्रंट पे एक स्टेज पे हमे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे एक बहोत बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पे खड़े भी है ।

यहां पर हमें बहोत बड़ा जो है ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है। ग्राउन्ड मे काफी सारी भीड़ है। एक बीच मे पानी का फाउंटेन दिखाई दे रहा है। फाउंटेन के पास काफी सारे लोग खड़े हैं।

सामने काफी सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। एक पर्सन चेयर पर बैठे हुए हैं सामने उनके रेड एक टेबल रखा हुआ है।